पानी का पाइप लगा हुआ है शटर लगा है ऊपर टीने पड़ी है।

बेड के ऊपर गद्दे पड़े हुए हैं गद्दों पर पन्नी चढ़ी हुई है।

एक बहुत बड़ी फैक्ट्री दिखाई दे रही है इसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ है।

ये एक बहुत बड़ा गाड़ी का शोरूम है इसमें बहुत सारी बाइक खड़ी है।

छत पर एक डीश लगी हुई है एक पेड़ लगा हुआ है पीछे मकान दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी लाइट लगी है ऊपर चमकीली पन्नी लगी हुई है नीचे लगी हुई है।

इसमें बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं। बच्चों के हाथ में गिफ्ट दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

टंकी का पाइप रखा हुआ है और स्टील की ग्रिले लगी हुई है।

कांच की खिड़कियां लगी हुई है ऊपर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है त्रिपाल बंधी हुई है।